और पीछे दीवार का कलर सफेद है और एक घड़ी लगी हुई है।

और साइड में एक दीवार है जिस पर एक बिजली का स्विच लगा हुआ है।

इस फोटो के अंदर सामने की तरफ एक बिल्डिंगे दिखाई गई है जिसमें बीच में एक झूमर लटका हुआ--

फोटो के अंदर एक रोड दिखाई गई है जिस पर कोई भैंस दिखाई गई है और एक औरत खड़ी है।

जिसमें हरा कलर है और सफेद कलर से व्यायाम शाला ओपन जिम लिखा हुआ है।

पेड़ खड़े हैं और सामने की तरफ कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और साइडों में कुछ बच्चे खड़े हैं।

जो स्टील की बनी हुई है और ऊपर टीन डली हुई है और पाइपो के सहारे रुकी हुई है।

जिस पर एक तौलिया लगी हुई है कुर्सी की साइड में दीवार पर एक स्विच लगा हुआ है।

पर द सिटी कैफे लिखा हुआ है जो काले कलर का है और सामने की तरफ एक दुकान बनी हुई है और कुछ लक लड़के खड़े हैं।

इनके मुंह हाइड किए गए हैं नीचे की तरफ मैट बिछी हुई है जो हरे कलर की है साइड में कुछ चेयर्स पड़ी हैं।

और शॉर्ट्स पहना हुआ है सामने की तरफ कुछ बड़े बड़े पहाड़ दिखाएं गए हैं।

जो कि एक हैंगर पर टंगी हुई हैं और बहुत सारे हैंगर लगे हुए हैं ऊपर की तरफ कुछ लाइट लगी हुई हैं कुछ--

नीचे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है जिस पर शीशा लगा हुआ है और कुछ खिड़किया दिखाई दे रही हैं जिन पर शीशा लगा है।

नीचे तीन गेट हैं बीच में शट्टर है और एक गेट पर शीशा लगा हुआ है।

जिन पर बच्चे बैठे हुए हैं उनकी कॉपी पेंसिल रखी हुई है।

इस फोटो में सामने की तरफ दो पेड़ दिखाएं गए हैं जिनके बीच में बच्चा खड़ा है।

सामने की तरफ कुछ सफेद कलर की टोकरी हैं जो एक अलमारी पर रखी हुई हैं।

व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं इनमें से एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हुआ है।

इस फोटो के अंदर एक स्माल ऑफिस दिखाया गया है जिसमे बहुत सारे काउंटर बने हुए है जिनमे--

और एक पंखा है जो चल रहा है कुछ लाइटे बड़ी है कुछ लाइटे छोटी है।

जिस पर कुछ ड्रम रखे हुए हैं जो नीले कलर के हैं और कुछ बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं और साइड में कुछ कचरा पड़ा हुआ है।

इस फोटो के अंदर एक टेबल दिखाई गई है जिसके ऊपर एक कपड़ा है जो चेक का है।

एक बड़ा सा टेबल पड़ा है जिसके ऊपर एक कैलकुलेटर रखा हुआ है।

बाहर के तरफ लगे हुए हैं और एक खंभा खड़ा है जो बिजली का खंभा है जिस--

फोटो के अंदर एक बिल्डिंग दिखाई गई है जिसके सामने एक रोड है जिसके साइड में कुछ घास खड़ी है।

बिल्डिंग मे बहुत सारी खिड़किया लगी हुई है और पीछे की तरफ कुछ और पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और ऊपर की तरफ कुछ खिड़कियां जो खुली हुई है और कुछ लाइटे दिखाई दे रही है और ऊपर आसमान दिखाई दे रहा--

जिसमें एक मशीन बनी हुई है जिसके ऊपर चादरें लगी हुई है लोहे की।

और नीचे कुछ चादर एंगल लगी हुई हैं लोहे की और नीचे दो बाल्टी रखी हैं।

इसमें बीच में एक सीमेंट का छोटा सा पिलर है उसके ऊपर लोहे का पिलर खड़ा हुआ है।

और एक कूड़े का बड़ा सा ढेर दिखाई दे रहा है और सामने कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं और कुछ घर दिखाई दे रहे हैं।